यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है मैदान दिखाई दे रहा है। पाइप दिखाई दे रहे--

यहाँ पर गर्ल्स दिखाई दे रहे है फैन दिखाई दे रहा है एक व्हाइट कलर पड़दा दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है गेट दिखाई दे रहा है पंखे दिखाई दे रही है दिखाई दे रहे है टेबला दिखाई दे रहे है चैर दिखाई दे रहे है।

यहा खेत दिखाई दे रहे मिट्टी दिखाई दे रहे रोड दिखाई दे रहे कुछ लोग दिखाई दे रहे कपडे दिखाई दे रहे हरिघास दिखाई दे रहे--

यह एक फूलों की शॉप दिखाई दे रही है यहाँ फूलों की माला दिखाई दे रही है भूले दिखाई दे रही है रेड कलर का भूल दिखाई दे रहा है टीन सेट दिखाई दे रहा है हरी घास दिखाई दे रही है।